यहाँ पर एक बहोत बड़ा मकान बना हुआ है और यहाँ पे टाईल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे छोटे छोटे झाड़ भी हैं।

और बड़े-बड़े झाड़ भी हैं यहाँ पर बहुत सारी लाइट भी लगी हुई है और कुछ बर्तन भी दिख रहे है यहाँ पे--

बहुत सारे झाड़ पेड़ भी है यहाँ पर और एक बहुत मैदान है यहाँ पर |

यहाँ पर एक गैरीज है | यहाँ पर एक बाइक रखी हुई है और भी कुछ सामान पड़ा हुआ है।

यहाँ पर कुछ लड़किया हैं इन्होंने कुछ पकवान बनाए हैं और यहाँ पर कुछ मैम भी है वह टेस्ट कर रही है |

और यहाँ पर खिड़कियाँ है उसमे जाली लगी हुई है और रेड कलर पूता हुआ है यहाँ पर पेंटिंग भी हो रही है।